बहुत बड़ा मंदिर है बहुत बड़ा गार्डन गार्डन है।

रात का दिन है और जाने आने का रास्ता भी है लाइट भी लग रहा है नज़र का पेंट भी दिख रहा है तालाब पानी भी दिख रहा है बादल कभी हरा-भरा दिख रहा है।

बहुत बड़ा दू- दुकान है आदमी भी है काँच का दरवाजा भी दिख रहा है लाइट भी लगा है सफ़ेद कलर में पोताया भी हैं।

आदमी आदमी भी दिख रहा है गाड़ी भी दिख रहा है पुतला भी लगा है दुकान का कार भी दिख रहा है सफेद कलर भी होता है ऊपर मे वायर भी गया है।

एसपी दुकान मॉल दुकान है कपड़ा मा भी ढंग का आया है गर्मी का दिन भी है सफ़ेद कलर भी दिख रहा है गाड़ी का आईना भी दिख रहा हैं।

आम का पेड़ है पि और इधर और पुलिस ये दो आदमी का आदमी दिख रहा है।